बगल मे भी एक फोटो लगी दिखाई दे रही है जिसपर मुझे माला लटकी दिखाई दे रही है नीचे कुछ डाइरीया रखी दिखाई दे रही है पेन दिखाई दे रहा है।

मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे तलवालकर लिखा दिखाई दे रहा है को-ऑपरेटीव बैंक लिखा दिखाई दे रहा है बिल्डिंग पूरी काँच की दिखाई दे रही--